एवं यहां पे बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर और कुछ छोटे छोटे कंकड़ भी नजर आ रहे हैं।

एवं यहां पे एक बड़ा सा पेड़ भी नजर आ रहा है।

एवं यहां पे बहुत सारे आदमी भी नजर आ रही है और यहां पे लिखा भी गया है पत्रातू।

और यहां पर एक टी_वी भी नजर आ रहा है।

तथा यहां पे एक टेबल है और उसके ऊपर कुछ रखा गया है।

तथा एक लड़का हाथ में लिए हुआ है कुछ तथा एक लड़का बैठा हुआ है।

जिसमें जिसका डस्टबिन भी रखा गया--

और यहां पे लिखा गया है राजू डी_जे साउंड ।

एक जिम घर का दृश्य है जहां पर जिम करने के लिए बहुत सारे मशीन ने रखी गई हैं।

जहां पर बहुत सारे झालर लगाए गए हैं तथा टेंट भी लगाया गया है।

यहां पे बहुत सारे रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं।

सभी लेडिस बैठकर पूजा कर रही है एवं यहां पे एक मूर्ति भी दिखाई दे रहा है।